वो नाव की परछाई नीचे नाजार आरही है पानी मे।

यह एक नदी है जाहापे दो बोट नजर आ रही है। नीले कलर की है एक ऑरेंज कलर की है।

एक और गाड़ी है जिस पे कवर डाला हे नीला कलर का बा ऊपर में बहुत बड़ा पाहाड़ है झाड़ ही झड़ नजर आ रहे है जहां भी देखो--

आ सफेद फुको से इसका कांच का दरवाजा है बाजू में कुछ अ अ अ बनाने के--

एक लोहे का कुछ नजर आ रहा है एक लाईट नजर आ रही है आईने नजर आ रहे है तो डोर नजर आ रही है।

यह एक बहुत बड़ा मॉल लगा दिखाई दे रहा है जो की सिटी सेंटर बोलते हैं उसक बहुत सारे पोस्टर्स नजर आ रही है।